एक सोसइटी हे सोसइटी की सम ने एक राकी हे।

जो आदमी खड़ा हे उसने ब्राउन अं की पेंट पेहन रखा हे|

कुछ मोटरसाइकिल राखी हुइ है ब्लैक कलर की इसमें कुछ फुल लग रहे है पिंक और कुछ रेड कलर की--

ब्रांच ढके हुए हैं सफेद कलर की फ्रिज है पंख लगे हुए हैं सफेद कलर के पंख हैं

एक टीन का मकान बना हुआ है ब्लू कलर की कुछ कमरे हैं